पेड़ लग रहा है फुलवाड़ी है और ये एलसीडी वगैरह है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है अच्छा लग रहा है देखने में घास --

यह एक दुकान है यहाँ पर कपड़े खरीदे जाते हैं।

और इसमें काफी लोग बच्चे पढ़ने भी आते हैं और शायद बाहर झंडे का वो लग रहा है।

इसमें तो बादशाह भी वाले कप भी हैं फूल वाले कप भी हैं।

ये किसी उसमे बैठा है यार जहां पानी भर जाता है खेत वगैरह में।

अरे यार ये तो बहुत बड़ी किराना दुकान है।

निशानी लगाई है चर्च की और ये जलती होगी यार रात को काफी अच्छा बना है आज लाल कलर की झोपड़ी है।

यार मछली खाने में तो बड़ी अच्छी लगती है यार लेगाऊंगा यार मैं भी ज्यादा है मछली।

ये है यार एक तो ये तो वो है जहां जयमाला वेयमाला डलती है यार।